यह मेरी गो राउंड यह मेरी गो राउंड झूला है इसके अंदर काफी लोग बैठे हुए है ये एक पार्क का व्यू लग रहा है।